जावा में इफ एल्से कंस्ट्रक्ट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रकार और जावा प्रोग्रामों में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग कैसे करते हैं इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू व 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको निम्न का प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए जावा में अरिथमेटिक रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स यदि ऐसा नहीं तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी दर्शायी वेबसाईट पर जाएँ
कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप अपने कोड में विभिन्न निर्णयों के लिए विभिन्न क्रियाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं
ऐसी स्थितियों में आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं
कंडीशनल स्टेटमेंट एक प्रोग्राम के निष्पादन के प्रवाह का नियंत्रण करने में मदद करता है
जावा में हमारे पास निम्नलिखित कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं इफ स्टेटमेंट ifएल्से स्टेटमेंट ifएल्से इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट इस ट्यूटोरियल में हम इफ ifएल्से और ifएल्से इफ स्टेटमेंट्स के बारे में विस्तारपूर्वक सीखेंगे
इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन पर आधारित स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं
इसे सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं
इफ स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट में यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक निष्पादित होता है
यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है और इसे निष्पादित नहीं किया जाता
अब यह समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का उपयोग कैसे किया जा सकता है
अतः अब इक्लिप्स पर जाएँ
हम एक प्रोग्राम लिखेंगे यह जानने के लिए कि क्या एक परसन माइनर है
मैंने पहले ही एक क्लास पर्सन बना लिया है अब मेन मेथड में इंट प्रकार का एक वेरिएबल ऐज घोषित करते हैं
अतः मेन मेथड में टाइप करें इंट अगे इस इक्वल टो 20 सेमीकोलन
अब हम निम्न के समान एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे अगली लाइन इफ ब्रैकेट्स के अन्दर अगे 21 ओपन कर्ली ब्रैकेट्स
एंटर दबाएँ यहाँ हम जांच कर रहे हैं कि यदि ऐज 21 से कम है
जो भी ब्रैकेट्स के अन्दर है इफ ब्लॉक से संबंधित है
अतः ब्रैकेट्स के अन्दर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अन्दर थे पर्सन इस माइनर सेमीकोलन यहाँ यदि अगे 21 से कम है तो थे पर्सन इस माइनर प्रदर्शित होगा
अतः फ़ाइल को सेव और रन करें
हमें निम्न आउटपुट प्राप्त होता है
द परसन इज़ माइनर
इस स्थिति में व्यक्ति की ऐज 20 है जो 21 से कम है
यह हमें आउटपुट प्राप्त होता है थे पर्सन इस माइनर
अब हम ifएल्से स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे
ifएल्से स्टेटमेंट का प्रयोग वैकल्पिक स्टेटमेंट्स को निष्पादित करने के लिए किया जाता है
ये सिंगल कंडीशन पर आधारित होते हैं
IfElse स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स पर देखें
यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट या कोड का ब्लॉक निष्पादित हो जाता है अन्यथा यह दूसरे स्टेटमेंट या कोड के ब्लॉक को निष्पादित करता है
अब हम देखेंगे कि Ifelse स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम में कैसे प्रयोग किया जाता है
अतः अब इक्लिप्स पर जाएँ
अब हम यह पहचान करने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे कि थे पर्सन इस माइनर ओर मजोर
अतः मेन मेथड के अन्दर टाइप करें इंट ऐज इस इक्वल टो 25 फिर इफ ब्रैकेट के अन्दर अगे इज़ ग्रेटर देन 21 कर्ली ब्रैकेट्स के अन्दर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट के अन्दर थे पर्सन इस मजोर
फिर टाइप करेंअगली लाइन एल्से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स के अन्दर डबल कोट्स में द परसन इज़ माइनर सेमीकोलन
यहाँ यदि ऐज 21 से कम है थे पर्सन इस माइनर प्रदर्शित होगा
एल्से थे पर्सन इस मजोर प्रदर्शित होगा
अब प्रोग्राम को देखें सेव और रन करें
हमें आउटपुट प्राप्त होता है किद परसन इज़ मेजर
यहाँ व्यक्ति की ऐज 25 है जो 21 से अधिक है
इसलिए प्रोग्राम के आउटपुट में प्रदर्शित होगा कि थे पर्सन इस मजोर
IfElse इफ स्टेटमेंट का प्रयोग स्टेटमेंट्स के विभिन्न समूहों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है
ये दी गई दो कंडीशंस पर आधारित होते हैं
आप अपनी आवश्यकता के आधार पर अधिक कंडीशंस भी जोड़ सकते हैं
इसे शाखीय या निर्णायक स्टेटमेंट भी कहा जाता है
अब IfElse इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स पर नजर डालते हैं
इफ स्टेटमेंट पहले कंडीशन 1 की जांच करता है
यदि कंडीशन1 ट्रू है तो यह स्टेटमेंट या ब्लॉक कोड 1 को निष्पादित करता है
अन्यथा यह कंडीशन2 के लिए जांच करता है
यदि कंडीशन 2 ट्रू है तो यह स्टेटमेंट या ब्लॉक 2 को निष्पादित करता है
अन्यथा यह स्टेटमेंट 3 या ब्लॉक कोड 3 को निष्पादित करता है
इस तरह हम ब्लॉक्स द्वारा कोड को बढ़ा सकते हैं इन ब्लॉक्स में मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं
जब तक इसे सही कंडीशंस प्राप्त नहीं होती है तब तक कोड निष्पादित नहीं होगा
यदि सभी कंडीशंस फॉल्स हैंतब यह अंतिम एल्से भाग को निष्पादित करेगा
हम देखेंगे कि IfElse इफ स्टेटमेंट को किस प्रकार एक प्रोग्राम में प्रयोग किया जा सकता है
अतः इक्लिप्स पर जाएँ
मैंने पहले ही स्टूडेंट नामक एक क्लास बना लिया है
एक स्टूडेंट का ग्रेड निर्धारित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
यह प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर किया जाता है
अतः मेन मेथड के अन्दर टाइप करें इंट स्पेस टेस्टस्कोर इक्वल टो 70 सेमीकोलन प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने के लिए टेस्टस्कोर नामक इनपुट वैरिएबल का प्रयोग किया जाता है
अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अन्दर टेस्टस्कोर लैस देन 35 कर्ली ब्रैकेट्स के अन्दर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अन्दर सी ग्रेड सेमीकोलन यदि टेस्टस्कोर 35 से कम है तो प्रोग्राम सी ग्रेड प्रदर्शित करता है
अगली लाइन में टाइप करें एल्से अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अन्दर टेस्टस्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एण्ड टेस्टस्कोर इज़ लैस देन और इक्वल टू 60 पूरी कंडीशन को ब्रैकेट्स में रखें कर्ली ब्रैकेट खोलें एंटर दबाएँ
टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स के अन्दर ब ग्रेड सेमीकोलन यहाँ प्रोग्राम एल्से इफ सेक्शन में दूसरी कंडीशन की जांच करेगा
यदि टेस्टस्कोर 35 और 60 के बीच है तो प्रोग्राम ब ग्रेड प्रदर्शित करता है
अगली लाइन में टाइप करें elseब्रैकेट्स के अन्दर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अन्दर आ ग्रेडसेमीकोलन अतः अंततः यदि दोनों कंडीशंसफॉल्स हैं तो प्रोग्राम आ ग्रेड प्रदर्शित करता है
अब हम इस कोड को सेव और रन करें
हमें आउटपुट में आ ग्रेड प्राप्त होता है
इस प्रोग्राम में स्टूडेंट का टेस्टस्कोर 70 है
अतः आउटपुट में आ ग्रेड प्रदर्शित होगा
अब टेस्टस्कोर को बदलकर 55 करते हैं
अब इस प्रोग्राम को सेव और रन करें
इस स्थिति में आउटपुट में ब ग्रेड प्रदर्शित होगा
हम कंडीशंस की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं
ब ग्रेड आउटपुट सेक्शन के बाद एक और कंडीशन जोड़ते हैं
अतः यहाँ टाइप करें एल्से अगली लाइन इफ ब्रैकेट्स के अन्दर टेस्टस्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एण्ड टेस्टस्कोर इज़ लैस देन और इक्वल टू 70
कर्ली ब्रैकेट्स खोलें एंटर दबाएँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अन्दर ओ ग्रेड सेमीकोलन यहाँ यदि टेस्टस्कोर 60 और 70 के बीच है तो प्रोग्राम ओ ग्रेड प्रदर्शित करेगा
अब स्टूडेंट के टेस्टस्कोर को बदलकर 70 करें
अब फ़ाइल को सेव और रन करें
हमें निम्न आउटपुट प्राप्त होता है
प्रोग्राम आउटपुट में ओ ग्रेड प्रदर्शित करेगा
यह आ ग्रेड नहीं है जैसा इसे पहले प्रदर्शित किया गया है
यह प्रोग्राम 70 से अधिक टेस्टस्कोर के लिए आ ग्रेड प्रदर्शित करेगा
कंडीशनल स्ट्रक्चर की कोडिंग करते समय एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते समय एक सेमीकोलन लगाना याद रखें
किन्तु कंडीशन के बाद सेमीकोलन न लगायें
कर्ली ब्रैकेट्स के अन्दर कोड ब्लॉक जोड़ें कर्ली ब्रैकेट्स वैकल्पिक होते हैं यदि ब्लॉक में एक सिंगल स्टेटमेंट होता है
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझा
कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रकारों को सूचीबद्ध किया
जावा प्रोग्राम में प्रयुक्त कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ ifएल्से और ifएल्से if
अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ ifएल्से और ifएल्से इफ स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके जावा प्रोग्राम लिखने का एक नियत कार्य लें
इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके दो मानों की तुलना करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें यह जांच करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें कि दी गई संख्या सम है या विषम है
संकेत ifएल्से स्टेटमेंट का प्रयोग करें
तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें
संकेत ifएल्से इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर पर उपलब्ध वीडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते है
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद